यहां पे ऑफिस के दिश्य देखा जा रही है।

ये एक स्टेशन की दृश्य दिखाई दे रहे है।

बहुत सारा रेल लाइन भी है।

यहां पे एक कॉलेज की दिश्य दिखाई जा रही है।

सामने और छोटा सा घर है।

मछली को तीन आदमी व्यपारी करने के लिए ले जा रही है।

दुकान में बहुत सारा आदमी आए हुए हैं।

रेस्टोरेंट मे बहुत सारा चेयर टेबल है।

यहां पे बहोत साड़ा घर है। एक बड़ा सा टॉवर है।

ये एक बहुत बड़ा पहार के दृश्य दिखाई दे रहे है।

मे बहोत सारा लोहा है।

स्टेशन के सामने और रेलवे क्वार्टर है।

चार आदमी है।

इस चित्र में बहुत सारे टेबल और चेयरे हैं।

यहां पे एक दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

सफेद कलर का शर्ट एंड नीला कलर का पेन पेना हुआ है।

दिन का समय हो रहा है अभी रेस्टोरेंट में।

बहुत सारे खिड़किया है रेस्टोरेंट के अंदर।

यहां पे एक पेट्रोल पंप की दृश्य दिखाई गए है।

पेट्रोल पंप के अंदर दो दुकान दिखाई जा रही हैं।

दिन का समय हो रहा है इस तस्वीर में।